एक टेबल फैन भीं दिख रहा दीवारों पर लगाया हुआ कुछ कुर्चिया दिख रहीं हैं आयना दिख रहा हैं दीवारों पर--

एक लोहे की सलाख दिख रही है एक घर दिखाई दे रहे कुछ लोग रस्ते से जाते नज़र आ रहे हैं हरे भरे पेड़ हैं।

यहाँ एक रोड दिखाई देरा है रोड बोहोत अच्छा है रोड के दोनों ही साइड में--

कुछ पहिए गाड़ी को दिख रहें हैं नीचे के साइड में हरे रंग के पहिए दिख रहें हैं।

पीछे के साइड में कुछ मकान दिख रहे हैं मकान के साइड में टू व्हीलर की गाड़ी दिखाई दे रही है।

यहां पे दो फोर व्हीलर की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं एक व्हाइट कलर की गाड़ी है।

कुछ लोग खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे के साइड में--

कुछ खुली जगह यहां पे दिख रही है बहोत अच्छा दिख रहा है एक रोड भी दिख रहा है।

एक बाई भी दिख रई है ग्रीन कलर की साडी पेनी हुई है आजू बाजू में पेड़ है।

स्टीकर लगाए हुए हैं कुछ क्रॉस के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं एक--

पानी सप्लाई करने की पानी सप्लाई करने की मशीन यहां पे दिखाई दे रही--

कुछ पेड़ लगाए हुए हैं लाइन से कुछ दीवाल का कंपाउंड बनाया हुआ है।

बूढी औरत यहां पे दिख रही है आगे खड़ी हुई है।

एक चर्च की बिल्डिंग यहाँ दिखाई दे रही है चर्च की बिल्डिंग बहुत पुरानी दिखाई दे रही है कहीं कहीं थोड़ा--

कुछ आदमी कुछ औरत यहां पे दिख रहे हैं कहीं-कहीं छोटे बच्चे भी हैं।

एक गोडाउन मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है गोडाउन में कुछ लोग कुछ वर्कर काम कर रहे हैं।

एक बड़ा सा स्टेज मुझे यहां दिखाई दे रहा है। स्टेज के ऊपर कुछ लड़कियां दिख रही--

डांस कर रहे हैं डी_जे के बड़े बड़े ब्लैक रंग के बॉक्स लगाए हुए है कुछ लाइट भी लगाई हुई है।

मुंह पर मास्क लगाए हुआ है हाथों में ग्लव्ज है सर पर एक वाइट कलर का हेलमेट की टोपी लगाई हुई हैं।